एक आदमी के खड़ा हुआ है कोल्ड ड्रिंक है।

गाड़ी को ओपन कर के रखे हुए है ऊपर टांग के रखे हुए है।